यहाँ पे जेंट्स लोग दिख रहे हैं बाइक पर बैठे हुए है ऐसे लग रहा है जैसे ट्रैफिक जाम है ।

फैन टी.वी लगा हुआ है और जिसके ऊपर बोर्ड लगा है उसके नीचे सुपर म्यूजिक सेंटर सेल एंड सर्विस --

और यहाँ पे कुछ खिलौने भी दिख रहे हैं और यहाँ पे सामने में कुछ लेडीज जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो बर्थडे पार्टी --